--और यंहा पर मुझे पीछे बिल्डिंग दिखाई दे रही है पेड़ दिखाई दे रहे है खुला आसमान अच्छे से नज़र आ रहा है।